मंदिर के सामने काफी गाड़ी नजर आ रही है ये मंदिर रोड पे हैं।

एक रेड कलर की कार दिख रही है मंदिर के ऊपर एक फ्लैग दिख रहा है।

इस चित्र में काफी लोग दिख रहे हैं और वो पानी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक्सरसाइज करने वाली लग रही है इसमें काफी सारे--

एक स्किन कलर का स्टूल भी दिख रहा है ब्ल्यू कलर का बैग भी दिख रहा है।

लड़की पैंट पहनी हुई है दो तीन लोग भी दिख रहे हैं एक बूढ़े ने --

रोड पर एक आदमी चलते हुए नजर आ रहा है एक औरत भी चल रही है जिसके ऊपर दुपट्टा है ऑरेंज कलर का।

रेड कलर का लिखा हुआ है दीवाल पे भी एक पोस्टर --

चित्र में हमें होटल श्रीनाथ दिख रहा है।

जो वाइट कलर का लिखा गया है ब्ल्यू बोर्ड पर--

यह गुजराती में लिखा हुआ है इस ठेला को रोड पे लगाया गया है।

जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और उसपे थर्टी नंबर लिखा हुआ है।

यह चित्र हमें सब्जी मंडी की दिख रही है जिसमें काफी तरह तरह की सब्जी रखी हुई है।

दुकान के अंदर चार लोग दिख रहे हैं।

अंकल ने कोट पैंट पहन रखे और आंटी ने साड़ी पहन रखी है।

इस चित्र में दो तीन लोग बैठे हुए हैं और वो टी_वी देख रहे हैं।

केक के चित्र बनी हुई दिख रही है भगवान की फोटो लगी हुई है।

ये एक दुकान है मोबाइल की कवर की।

एक टेबल टाइप में कुछ रखा गया उसके ऊपर बुक टाइप में है कुछ --

काफी तरह तरह के लाइट्स से जलते हुए नजर आ रही है।

और छोटे छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं पानी दिख रहा है इसमें।

दीवाल का कलर व्हाइट है और हमें वायर भी दिख रहा है ऊपर में--

कुर्सी के बगल में एक बोर्ड है जिसके अंदर दो ब्लैक कलर की पीन लगी हुई है।

काफी सारी कुर्सियां दिख रही है कुर्सियों का कलर ब्लैक है।

लड़के के पीछे काफी सारे मैट दिख रहे हैं जिसके कलर कलल कलरफुल है।

दीवाल का कलर व्हाइट है फर्श का कलर ग्रे है।

यह चित्र ए_टी_एम का है स्टेट बैंक ए_टी_एम ।

इस चित्र में रोड दिख रहा है काफी सारी--

इस चित्र में हमें दो मुर्गा एक मुर्गी देखने को मिल रही हैं।

दीवाल पे ट्यूबलाइट लगी हुई है जो ब्राउन --

कलर के दीवाल पे लगी है और ट्यूबलाइट का कलर व्हाइट है ऊपर का छत व्हाइट पूरा है।

इस चित्र में हमें काफी सारे टेंट दिख रहे हैं।

इसमें काफी सारे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे से दूर पहाड़ भी दिख रहा है।

और एक स्कैनर दिख रहा है लाइब्वॉय वाला हैंडवाश का भी रखा गया है।

पानी बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है उसका कलर ब्राऊन है।

पानी में से झाग निकलते हुए नजर आ रहा है।

काफी सारे पौधे दिख रहे हैं रंग बिरंगे के।

इस चित्र में हमें राशन की दुकान दिख रही है।

दो आदमी नजर आ रहे हैं इस चित्र में एक आदमी--

आलू प्याज लहसुन और एक टी_वी भी दिख रहा है।

दो लाइट का बंबू भी दिख रहा है इस चित्र में हमें।

ग्राउंड में एक साइकिल खड़ी हुई है जिसका कलर रेड एंड ब्लैक है।

कांच पे लगे हुएं हैं नीचे फ्लावर पॉट भी दिख रहे है एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

इसमें काफी पेशेंट वाली बेड देखने को मिल रही है।